इस तसवीर मे महिंदरा के एक गाड़ी नजर आ रही है जिसके ऊपर जय माँ शेरावाली लिखा है।

इस तसवीर में संतोषी माता मंदिर महामाया आस्थान को दर्शाया गया और मंदिर को बोहत ही अच्छे तरीके से सजाया भी गया हुआ है।

यहाँ एक मंदिर की तसवीर है इस मंदिर का नाम श्री रानी सती मंदिर दादी धाम है।

इस तस्वीर मे बहुत सारा घर आ और गाड़ियां भी है और आस पास मे कुछ पेड़ भी है।

इस तस्वीर मे एक व्हाइट कलर का स्कूल हैं जिस का नाम हैं वेल ब्रेड पब्लिक हाई स्कूल